यह किसी जलप्रपात का दृश्य है जिसमें ऊपर से झरना नीचे बह रहा है।

नीचे एक लोहे की गेट है जो भूरे रंग की है।

पिलर है लोहे की वो हरे रंग की है।

इसमें एक बेड लगा हुआ है जिस पर दो सफेद एवं दो लाल तकिया रखे हुए हैं ।

यह दृश्य किसी हास्पिटल का है।

इसके फर्श पर सफेद रंग की टाइल्स लगी हुई है।

यह दृश्य किसी बस अड्डे का है।

बहोत सारे ठेला लगे हुए हैं जिसमें से एक जूस का ठेला लगा हुआ हैं।

बहुत से बैंच लगे हुवे हैं जिस पर बहुत से लड़के एवं लड़कियां बैठ के पढ़ाई कर रही हैं।

यह किसी कमरे का दृश्य है।

इसके फर्श पर दो कार्टून रखा हुआ है जिस पे कुछ सामान भरा हुआ है ।

इस चित्र में सामने एक बड़ा सा बिल्डिंग बनता हुआ दिख रहा है।

फर्श पर टाइल्स बिछी हुई है।

किनारे में बहुत सारे पेड़ है।

टेबल पर बोटल एवं ग्लास रखी हुई हैं।

जमीन पर बहुत से थैले एवं कपड़े बिखरे हुए हैं।